यह दुकान है और इस दुकान में सभी चीज मिलता है और इस दुकान में फेविकोल भी मिलता है फेवीक्विक भी मिलता है और इसमें कुपि वाला तेल भी मिलता है जो मस्त सिलाई मशीन में डाला जाता है और इसमें बियर में मिलता है दारू भी मिलता है बहुत सारी चीज मिलता है इसमें खाने-पीने का --

यह कपड़ा का दुकान है और इस दुकान में जींस मिलता है शर्ट मिलता है टी-शर्ट मिलता है और बोहोत रंग रंग का कपड़ा मिलता है और इस दुकान का पर नाम है एसपर्ट फैंसी और --